आगे दो मंज़िला ईमारत है इसके ग्राउण्ड के बीच में झण्डे के लिए एक पोल गाड़ा गया है और यह के --